केले के पत्ती दिखाई दे रहे है यहाँ पे डेकोरेशन दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे है बीच मे एक लड़का येलो कलर के शर्ट पहने दिखाई दे --